यखमा जी एक पेट्रोल पम्प चा।

एक आदमी छ यख मजी। यख मजी एक कमरा छा। यख मजी लाईट भी चन लगीं।

ईं का एंच लाल रंग कु छपर भी छ लग्युं ईं पर सफ़ेद रंग होयुं।

यख मा जी एक बहोत बड़ी इमारता जु तीन से चार मंजिल की ईं पर नारंगी रंग होयुं ईं पर कई सारी खिड़की छन।

यख मजी एक झील छा झील का किनारा मजी कई सारा हर्यां-भर्यां डाला चन हर्युं- भर्युं पहाड़ चा हर्यां-भर्यां पांडा चन।